और वहां पे अपने कुरान भी पढ़ते हैं यहां पे हिंदूज नहीं जाते --

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पे हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं।

कांच बनते है डीजल मिलता है पेट्रोल मिलता है ये रेड कलर की बनी हुई है और रोड भी अच्छा --

यह एक स्विमिंग पूल हैं यहां पे लोग नहाने आते हैं।

और लोग वॉक भी कर रहे है इसमें--

और सामने खिड़की है गेट भी है दूसरी तरफ वुडन वर्क है।

यह एक ऑफिस है यहां पे चार लोग बैठे है और इनके सामने एक टेबल है।

और वहां पे इनका हेड इनको प्रोजेक्टर से कुछ समझा रहे है।

और इसके साइड में एक वेलकम बोर्ड है जो की छपा हुआ है।